बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रही है गाड़ी दिखाई दे रही है दो पेड़ दिखाई दे रहे है जिसमे ऑरेंज और येल्लो कलर पूता हुआ है । उसपे हिन्दी मे बिहार विकाश --

एक पाइप दिखाई दे रहा है जो ब्लेक कलर का दिखाई दे रहा है | स्क्रू-ड्राइवर दिखाई दे रहा है | एक जेन्ट्स दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट ऑरेंज कलर की जैकिट पहनी है रस्सी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है | उसकी दिवार पे व्हाइट पिंक पूता हुआ दिखाई दे रहा है दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे वाइट कलर पूता हुआ है रेड कलर भी पूता हुआ है एक ब्लेक कलर की होल्डिंग लगी हुई है जिसेम व्हाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है ।

दीवार खड़ी दिखाई दे रही है बहुत सारी तस्वीर दिखाई दे रही है एक छतरी दिखाई दे रही है स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का टॉवल दिखाई दे रहा है।